पेड़ ग्रीन कलर के लगे हुए हैं एक टावर बना हुआ है।

यहाँ बहुत सारे गेट वगैरा बनी हुई है बहुत सारे खिड़कियां बनी हुई है।

पास में बहुत सारे पेड़ वगैरा लगे हुए हैं पेड़ हरे कलर के यहाँ पर लगे हुए हैं।

यह जंगल ही जंगल है और जंगल के पास एक जो रोड गया हुआ है हाईवे --

सारे दरवाजे हैं और इसमें बहुत सारे पेड़ वगैरा लगे हुए हैं और इसमें एप्पल का पेड़ लगा हुआ है बाजू मे--

बैठक बनी हुई है और पास में इसके बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं अगल-बगल--

और ये बैठने वाले ने पीले कपड़े पहने हुए हैं और पीले कलर की--

चेयर डली हुई है और ये चेयर सारी खाली डली हुई है।

और यह पीले कलर की पोती हुई है।

बहुत सारा कमरे वागेरा बने हुए है बहुत सारा खिड़कियां वगैरा है।

पास में इसके बॉउन्ड्री खींची हुई है पास में बहुत सारे पेड़ वगैरा भी लगे हुए हैं।

ये एक मार्केट है और यहाँ पर लोग चढ़े हुए हैं और ये इस पर से कुछ देख रहे हुए हैं।

और ये टेंपो मशीन को लाने ले जा रहा है।

दा खड़े हुए हैं यहाँ पर और कुछ लोग कर रहे हुए हैं और यहाँ पर पीले कलर की मेटे बिछी हुई है।

यहाँ पर बहुत सारे प्लांट वगैरा लगे हुए हैं और बहुत सारे अच्छी डेकोरेशन हो रही है।

और यह पुतले के अंदर रखे हुए हैं और यह कोर्ट व गैरा भी यहाँ पर रखे हुए हैं और जो दुकान में --

ये जंगल है इसमें झरना है ये झरना बहुत ही ऊँचा बना हुआ हैं।

और इसमें बहोत सारे बहुत ही अच्छे-अच्छे ढोल वगैरा रखे हुए हैं।

ये मार्केट है और यहाँ पर बहोत ही ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है।

और पीले-पीले फूल वगैरा इसमें डले हुए हैं।

हर तरह के कटिंग के बैनर लगे हुए हैं।